जैसा की तस्वीर में देख ही पा रहे हैं यहां पर बहोत सारी बलूंस से इस नई स्टेशनरी की इनॉग्रेशन की गई है।

मिले जाते हैं यहां पर हर तरीक़े के डब्बे ब्रांड्स र--

और सबसे लास्ट में यहां पर कॉर्नर पे ट्रक खड़ा--

पता चल रहा है की यह सुनार की दुकान है इसमें डमी स्को

पोल पर खंभे की लाइट्स नजर आ रही है यह मध्य दिन दोपेहर की--

यहां पर सभी प्रकार के सूट सारीज उपलब्ध है।

यह एक प्राकृतिक तस्वीर नजर आ रही है जैसा कि देख सकते हैं ये एक--

एक बहुत बड़ा सा ट्रक खड़ा हुआ है।

छापा गया है यहां पर व्यक्ति खाना बनाते नजर आ रहे हैं।

यह तस्वीर किसी पुली पुलिस स्टेशन की दर्शाई गई है यह ए रोहतक जिले का पुलिस स्टेशन नजर आता है जैसा की तस्वीर में आप देख सकते हैं।

यह तस्वीर डा किसी ढाबे की नजर आती है जैसा कि तस्वीर में देख पा रहे हैं यह शाम का समय दर्शाता हैं।

का सभी जरुरत का सामान बॉडी केयर --

इत्यादि हर चीज मिलती है बॉडी केयर हेल्थ केयर सामान भी मिलता है।

दिखाई दे रहे हैं दुकानदार सामान बेच--